जामताड़ा का ठीक है जो कि सामने गाड़ी भी है और दुकानें भी है और सरदार हॉस्पिटल जो बिल्डिंग यहां से दिख रहा है।

एक बाइक रखा है जो की खड़ा है बाइक और--